सामने के तरफ मुझे एक एक छोटा सा आ रहा है घर के उपर सामने तरफ मुझे बोर्ड नजर आ रहा हैंजो की नजर आ रहा हैं उसके कलर भुजा ऑरेंज नजर आ रहा हैं व्हाइट नजर आ रहा हैं करके लिखा हुआ नजर आ रहा है।

मुझे एक दुकान नज़र आ रही है दुकान के बाहर मुझे काफी सारी पाउच नज़र आ रहे हैं कुछ चिप्स के पैकेट नज़र आ रहे हैं टंगे हुए नीचे की तरफ मुझे कुछ डब्बे नज़र आ रहे है डब्बे के अंदर कुछ समान रखा हुआ नज़र आ रहा है।

दो तरफ़ मुझे कुछ घर भी नजर आ रहे हैं एक लाइट(light ) जलती हुई नजर आ रही है जो की काफी रौशनी देरी है छोटी छोटी सी लाइट भी नजर आ रही है रात का मौसम नजर आ रहा है कुछ लोग चलते हुए नजर

मुझे एक स्टोर्स सा नज़र आ रहा है किराने की दूकान नज़र आ रही है इस उसके अंदर की तरफ मुझे एक टीवी नज़र आ रही है ऊपर की तरफ ब्लैक कलर की सामने की तरफ मुझे कुछ कॉस्टमेटिक सामान रखे नज़र आ रहे है।

मुझे एक सैलून का बोर्ड नज़र आ रहा हैं जो कि ब्लैक कलर का हैं नीचे की तरफ मुझे बैलून्स से बना हुआ एक गेट नज़र आ रहा हैं।

सामने की तरफ मुझे पांच छ: लोग नजर आ रहे है और बाहर की तरफ एक दो बाइक खड़ी नजर आ रही है और घर नजर आ रहा है घर के ऊपर की तरफ मुझे खिड़की नजर आ रही है खिड़की खुली नजर आ रही है।

मुझे अ दो घर नज़र आ रहे हैं घर के नीचे मुझे कुछ पिल्लर नज़र आ रही है जो कि ब्राउन कलर की नज़र आ रही है सामने की तरफ मुझे एक बड़ा सा मैदान नज़र आ रहा है उस के ऊपर हरी हरी कलर की घास नज़र आ रही है ऊपर की तरफ मौसम काफी साफ़ नज़र आ रहा है।

मौसम जैसा मुझे सूरज भी निकलता नज़र आ रहा है रौशनी दान मौसम नज़र आ रहा है नीचे की तरफ मुझे दूर की तरफ मुझे कुछ हरयाली सी भी नज़र आ रही है।

इसी के साथ मुझे कुछ कांटे के पेड़ भी नज़र आ रहे है ऊपर की तरफ का मौसम काफी साफ़ नज़र आ रहा है और सामने की तरफ कुछ सफ़ेद सफेद से कुछ बादल नज़र आ रहे है बड़े-बड़े बादल नज़र आ रहे है छोटे-छोटे भी बादल नज़र आ रहे है।

मुझे एक घर नज़र आ रहा है घर के पीछे की तरफ मुझे कुछ लोहे के पाइप नज़र आ रहे है और सामने की तरफ मुझे हरे कलर का ए घासें नज़र आ रही है इसी के साथ मुझे घर के ऊपर की तरफ मुझे सीढ़ी नज़र आ रही है दो एक सीढ़ी नज़र आ रही है घ --

मुझे एक बड़ा- सा घर नज़र आ रहा है जोकि येलो कलर का नज़र आ रहा है और नीचे की तरफ मुझे एक बोर्ड्स पे लिखा हुआ येलो कलर के कुछ ब्लैक कलर से लिखा हुआ नज़र आ रहा है नीचे की तरफ मुझे एक लड़का बैठा हुआ नज़र आ रहा है एक बाइक नज़र आ रही है नीचे --